यहां पर पर्दे लगे हुए हैं जो मेहरून कलर के हैं।

दूसरी साइड में एक आदमी खड़ा है उसका चेहरा ब्लर है।

ये एक पार्क है इसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

यहां पर एक झुमर लगा है जिसमें लाइट लगी हुई है।

दूसरे साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

दूसरे साइड में जाली वाला झूला पड़ा है।

दो आदमी बाहर खड़े हुए हैं इनका चेहरा ब्लर है।

यहां पर तीन आदमी खड़े हुए हैं जो मंदिर के आगे हैं इसका चेहरा ब्लर है।

ये एक दुकान है। इसमें बोहोत सारे टायर पड़े हुए हैं और सामान भी बोहोत सारी पड़ी हुई हैं।

एक आदमी पानी लगा रहा है दूसरे साइड में एक पहिए खड़े हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग है जो अरेंज और येलो और वाइट कलर से पेंट हुई है।

दूसरे साइड जमीन में ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

दूसरे साइड में एक बड़ी मशीन है जो ब्लैक कलर की है।

एक आदमी और एक औरत आ रहे है।

ये बोहोत बड़ी पेट्रोल टंकी है। इसमें बहोत सारी लाइट जल रही हैं। इसमें बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं। दूस --

दूसरी साइड में कुछ लड़की बैठी हुई हैं।

दूसरे साइड में बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है इसमें बहुत सारी कॉपी और किताबें लगी हुई है उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है।

जो कॉपी खोल रहा है। दूसरे साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो जिसका चेहरा ब्लर है। वो ब्लू और --